ए.सी. वगेरा लगा हुआ है फैन वगेरा लगा हुआ है लाइट उट है कुछ विंडो वगेरा है कुछ टेबल पे से --

बाहर मे तरफ पेड़-पौधे हैं।